इस इमेज में यहां पर ब्लू कुर्सियां दिखाई दे रही है और कुछ फूल भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा है जहां पे झूले लगे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है जहां पर दो बच्चे नहाते हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है यहां पर गमलों में पोधै लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पर मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा चलती नजर आ रही है।

यहां पर एक माल दिखाई दे रहा है जहां पर ढेर सारी सब्जियां नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पे पानी का पाइप पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में में यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर पौधे लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और सामने बड़ी सी इमारत भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और काउंटर के पास एक लड़की मोबाइल पर बात करती नजर आ रही --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

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर छत दिखाई दे रही है और टेबल कुर्सी रखें नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर एक्सरसाइज करने की मशीनें रखी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में एक पूल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बाइक लाइन से खड़ी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहाँ पर एक बंगला दिखाई दे रहा है जिसमें मंदिर भी बना नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक गेट दिखाई दे रहा है जिस पे होम्योपैथिक क्लिनिक लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है जिस पे एस_बी_आई लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जहां पर कुछ मजदूर काम करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक नांव दिखाई दे रही है जिस पर कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर आग का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर न अनार जलता नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने यहां पर कुछ सब्जियां दिखाई दे रही है जैसे आलू भिंडी टमाटर पालक मेथी --

इस इमेज मे यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है यहां पर कसरत करने की मशीनें रखी नज़र आ रही है।